एक अ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक चर्च हो।

जो कि लाल कलर की शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर की --

और देख औ और इसमें दोपहर का वक्त नजर आ रहा है।

और एक पेड़ नजर आ रहा है और एक पहाड़ नजर आ रहा है।

मुझे इस इमेज में एक शॉप नजर आ रही है जो की देखने में लगता है एक बुक --